अलौकिक महादेव मंदिर का मंदिर है यह वैशाली पे स्थित है यहाँ पे आप आ के पूजा कर सकते है यह मंदिर है यहाँ पे कुछ पेड़-पौध दिखाई दे रहै है उसके नीचे कुछ रहने के लिए व्यवस्था की गई है उपर एक झंडा लगा हुआ है।